में लाइटे लगी हुई है बहुत सारी हरी नीली काली पीली जो बहुत ही रंगी बिरंगी है ये म मंदिर है मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है।

ये एक इसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है और रेड कलर का दिल भी बना हुआ है और रेड गुब्बारे भी हैं।

और इसमें कई सारे कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं पीला लाल आग भी दिखाई दे रही है।

जो एक लैंटर डाल डाल रहे हैं जाल भी है इस पर पानी भी पड़ा हुआ है।

और पेड़ भी लगे हुए हैं बराबर में और कुछ लोग माल ला रहे हैं और कुछ ले जा रहे हैं कुछ खड़े हुए हैं।

जो आय ट्वेंटी है और रोशनी पड़ रही है और पेड़ भी लगे हुए हैं.

यह कुछ ई रिक्शा दिखाई दे रही है कुछ ई रिक्शा में लोग बैठ जा रहे हैं कुछ बसें भी दिख रही हैं।

अ जो कलर है वो तोतिया कलर है बहुत ही अच्छा कलर है ये और यह पुष्पा पा--

और सड़क पर एक बाइक भी जा रही है और ये नजारा देखने में बहुत ही--

एक्सरसाइज करते हैं सुबह शाम घूमने आते हैं और पूरा लाभ उठाते है पूरा आनंद लेते हैं।

ये एक ए_ टी_ एम है जहां ए_ टी_ एम लगा है जहां से आप पैसे काट सकते हैं कितने ही काट लो दस लाख दस करोड़ बीस करोड़ --

और एक अंदर आदमी भी बैठा हुआ है जो सिक्योरिटी गार्ड है जो सिक्योरिटी में रहता है कभी कोई ए_टी_एम फाड़ के ना ले जाए।

ये एक जिम है जिम में मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही है इसमें पंखे भी लगे हुए ह--.

कुछ इसमें ब्लैक कलर की है कुछ रेड कलर की है और--

और कॉलेज दिखाई दे रहा है कॉलेज में शीशे भी लगे हुए हैं जो बहुत ही अच्छा है हॉस्टल जो ह--